आज भंडार की दुकान दिखाई दे रही है।

मुझे इसमें एक रूम दिखाई दे रहा है।

और इसके चारों तरफ बहोत सारी पेड़ भी दिखाई दे रही--

और इस सड़क के दोनों ओर गाड़ियां--

मुझे इसमें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री --

और इसके अंदर सीमेंट से बने हुए ब्लॉक भी रखे हुए--

और मुझे इसमे एक रेड कारपेट भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे इस पेट्रोल पंप के बाहर--

और इसके बाहर बहोत सारा मैदान--

एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा--